और एक आदमी और इसपे पन्नी से ले लेशन कर रहा है।

और उनके पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ हरी हरी घासे भी लगी हुई है।

और छत में एक पंखा भी लगा हुआ है।

यहां एक फलों की ठेली है इस ठेली पर बहुत से फल भरे हुए हैं।

और नीचे दो प्लास्टिक की एक बाल्टी और एक लोहे की बाल्टी रखी हुई है।

और बहुत सारी महिलाएं भी खड़ी हुई है।

और दीवार पर एक ओम का चिन्ह बना हुआ है।

वो बाहर एक गाय और उसकी बछड़ी खड़ी हुई है।

और छत पे लाइटें जल रही है और दीवारों पर पंखे लगे हुए हैं।

और हरी हरी घासें भी और सामने एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है।

यह एक दीवार है इस दीवार के साइड में एक गेट लगा हुआ है।

और कुछ आदमी वहां पर बैठकर खाना खा रहे हैं और एक महिला काउंटर के पास में खड़ी हुई है।

और लड़की को अपना इलाज बता रहे हैं।

इसमें बहोत सॉरी टेबल और कुर्सीआएं रखी हुई है।

यह एक स्टूडियो जॉन्स लाइब्रेली है।